उसने एक छोटे से बच्चे को ले रखा है।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

दो गेट हैं इन शटर के जिन पे टोटल लिखा--

व ऊपर एक पोस्टर लगा है जिस पर संजय ऑटो पार्ट्स एंड रिपेयर लिखा हुआ है।

एक शटर खुला हुआ है जिसमें दोनों तरफ ताले लगे--

मोटरसाइकिल का हैंडल दिख रहा है।

और इस घर पर हल्का हरा कलर है।

यह बिल्कुल दोनों रास्तों के मोड़ पर खड़ा है।

उपर में सीडीयां है लोहे की।

रिसेप्शन का काउंटर पर माला टंगी हुई है।

दूर बच्चे खेल रहे हैं दीवार पर सफेद रंग है।

बार में लाइट लगी हुई है दीवार पर।

एक टेलीफोन रखा है एक स्क्रीन लगी हुई है जिस पर कैमरे की फुटेज दिखाई जा रही है।

एक फायर एक्टिंगुसर दीवार पर लगा हुआ है।

कट्टे और बोरियां रखी हुई है।

यह उसके अंदर एक चम्मच सिंपल वाली है एक फोर्क वाली चम्मच चाऊमीन खाने वाली।

बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं।

एक औरत हरी साड़ी पहन कर बैठी है।